हेलो भाई साहब देख पा रहे हैं यह यहां छबीस जनवरी मनाया जा रहा है चर्च के आगे देख पा रहे हैं।

कितने सारे स्टूडेंट पढ़ने आते है कितने सारे साइकिल है आप अनुमान लगा सकते है यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट पढ़ने --

द सिटी कैफ़े ये सिटी के है देख पा रहे है यहाँ पे कितने सारे लोग आ हुए है और ग्रुप सेल्फ़ी करवा रहे हैं।

फाउंटेन पेन सिंपल पेन हरेक कलर की पेन व्हाइटनर रबर कंपास सारे बुक्स भी मिल जाएगी।

एक देख सकते है यह एक पहाड़ का सीन है जो एक व्यक्ति पहाड़ के ऊपर चढ़कर फोटो खींच रहे खींचा रहे है देख सकते है कितना बड़ा और कितना घना पहाड़ है ये पहाड़ बहुत दूर तक फैला हुआ है।

समान लोड हो रहा है इस फैक्ट्री फैक्ट्री देख पा रहे है कितना लंबा और बड़ा है की कितनी वोर्लेर्स है सब अपने-अपने सेफ्टी है।

कैलेंडर मिल जायेगा मिल जायेंगे जी.के जी.एस मिल जाएगा अधिक लैंग्वेजके आपको यहा पे आसानीसे बुक मिल जायेंगे पेन मिल जायेगा व्हाइटनर मिल जायेगा रबर कटर कम्पास सारी चीज --

ये देख सकते हे बेहनजी सायकल से अपने कोचिंगसे आ रही है घर की ओर जा रही है स्कूटी से भी --

देख सकते है पहाड़ के ऊपर कितने सारे सिंदूर लगे हुए है कोई व्यक्ति अंदर जाके पूजा कर रहा है कोई बाहर से ही फोटो खींच रहा है आप देख सकते है कितने सारे लोग आए यहाँ पे पहाड़ है काँच है वृक्ष ह --